साड़ी पहेनी हुई है यहा पे एक बहोत बड़ा गेट लगा हुवा है गेट जो वाईट कलर का है एक ब्लेक कलर का है और यहाँ पर एक अ--